गाड़ी खड़ी हुई है जो अच्छे से नहीं दिख रही है। बोहोत बड़ा बैंक है और सफ़ेद कलर का है।

एक नाइट प्रोग्राम हो रहा है जिसमे ऊपर साइड दो पंखे लगे हुए हैं लाईट लगी हुई हैं बोहोत से व्यक्ति खड़े हुए हैं मंच के ऊपर और कुछ व्यक्ति मंच के नीचे कुछ व्यक्ति मंच में बैठे हुए हैं।

और साइड में जेंट्स बाथरूम दिखाई दे रहा है। सामने कुर्सियां लगी हुई हैं सफेद कलर की दिवाले दिखाई दे रही हैं उसमें लाईट लगी हुई हैं।

सामने डबल मंजिल की बिल्डिंग दिखाई रही जिसमें बहुत सारे दरवाजे और बहुत सारे गेट दिखाई दे रहें --

इसमें एक शक्ति ट्राली ईदगाह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है उसके ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे।